ये एक जंगल है यहां पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए है पुरे में पूरे जंगल मे ट्रीज लगे हुए है।

ये एक रोड दिख रहा है और रोड पे दो बाइके खड़ी हुई है एक बाइक ब्लैक कलर की --

इस भी लगे है स्काय ब्लू कलर का येलो कलर का पिंक कलर और एक रेड कलर का और बाजु मे सब हरियाली ही हरियाली है।

ये कपड़ों का माल है यहां पे बहुत सारे हेंगर में कपड़े टंगे हुए है साइड मे कुछ जीन्स टँगीं हुई है और यहां पे साइड में छोटे बच्चों के कपड़े टंगे हुए है।

और सामने एक पानी की टंकी रखी है और एक घर हैं।

यहां पे एक कार खड़ी हुई है और आजू-बाजू बहुत सारे ट्री है यहां पे ग्रीन कलर के और यहां पे एक रोड है रोड के सामने मंदिर है।

जहाँ कुछ कबर्डस बने हुए है उस पे कपड़े रखे हुए है ।

ये एक ग्राउन्ड है यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉगिंग कर रहे है कुछ लोग रेड कलर के कपड़े पहने हुए है कुछ स्काय ब्ल्यू कलर के कपड़े पहने है और सामने कुछ ट्रीज दिख रहे है।

कुछ क्रष्ड ऑरिओ के बिस्कुट्स बिस्किट्स केक के ऊपर रखे हुए है और कुछ चॉकलेट बॉल्स लगी हुई है केक्स के ऊपर।